जैसा की हम देख सकते हैं सफेद कलर का भवन दिख रहा है भवन के अन्दर सामने एक घड़ी दिख रही हैं जिस पर टाइम लिखा हुआ है उसके ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है ऊपर सफेद कलर की दीवारें पीली कलर की नई हैं सफेद कलर की खिड़कियाँ पीले कलर की है।

जैसा हमको दिखरा है ये कुछ सेलून टाइप लग रहा है इस सैलून ही है उनिसेक्स सैलून लग रहा है एक समान लग रहा है के सामने उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो हरी दीवार के नीचे देख बना हुआ रखे गए।

इस चित्र मे हम देख सकते है कि झरना दिख रहा है झरना ऊपर की ओर से नीचे की ओर बहता हुआ आ रहा है पीछे पहाड़ दिख रहे है हरे भरे पेड़ दिख रहे है।

जैसा कि हम देख सकते हैं एक भवन दिख रहा है जो भवन है स्कूल जैसा लग रहा है क्युकी स्कूल में चारों और से भवन बना होता हैं बीच मे खाली ग्राउंड होता है और यह स्कूल सही लग रहा है।

जैसा की हम देख सकते है हमे कॉलेज की मल्टी डिग्री दिख रही है जो कि सफेद कलर में दिख रही है और यह मल्टी दो मंजिला बहु मंजिला इमारत दिख रहा है इसमें बिच में एंडोस्केप दिख रहा है जो चार पिलरो पे खड़ा हुआ है।

इसमें अंदर जाने का रस्ता बना हुआ है पूरी मल्टी में बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है जिससे हम बाहर देख सकते है ठीक इसके जो कलर की बात कर रहे है वो कलर इसका सफेद और बिच में ब्राउन कलर है।

इस मन नजारे का लुफ्त उठा रहे इधर हल्की हल्की धूप दिख रही है पानी एक जगह इकट्ठा हुआ दिख रहा है और कुछ कुछ बह भी रहा है जो की थोड़ा-थोड़ा हल्का बह रहा है।

जैसे की हम देख सकते है ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है पर बहुत ही अच्छा लग रहा है नदी का पानी ठहरा हुआ दिख रहा है पीछे बड़े बड़े पेड दिख रहे है जो की हरे कलर के लग रहे है पीछे पहाड़ दिख रहा है जो की बहुत बड़ा दिख रहा है उसके ऊपर आसमान दिख रहा है।

उसके बाद ब्लैक कलर का ऑटो दिख रहा है सफेद कलर में कपड़े में खड़ा हुआ आदमी था उसके पास में कपडे में आदमी बैग टाँगा हुआ है सामने चाय की दुकान दिख रही है।